coordinate reference system in qgis पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगेः
qgis में projections पर लेयर्स जोड़ना
layers के लिए metadata की जानकारी देखना
नई layer में लेयर से चयनित विशेषताएं सेव करना
एक साथ भिन्न projections के data layers को ओवरले और पुनः प्रोजेक्ट करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको gis का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए
कृपया इस श्रृंखला का पिछला ट्यूटोरियल देखें
coordinate reference systems के बारे में
coordinate reference systems दो प्रकार के होते हैं
अधिक व्यापक उपयोगित geographic coordinate system wgs 84 है
अधिक व्यापक उपयोगित projected coordinate system utm है
यहां मैंने qgis इंटरफेस खोला हुआ है
canvas पर देश की प्रशासन सीमाओं के साथ विश्व मानचित्र प्रदर्शित होता है
मानचित्र को डाउनलोड करने और qgis में प्रदर्शित करने के तरीके के बारे में प्रदर्शन को पूर्वापेक्षित ट्यूटोरियल में समझाया गया है
कृपया पूर्वपेक्षित ट्यूटोरियल देखें
इस फाइल को code files लिंक से भी डाउनलोड़ किया जा सकता है
canvas के बाईं ओर पर आप layer नामक विश्वमानचित्र की फाइल के साथ layers panel देखेंगे
यहां डिफॉल्ट रूप से layers panel सक्षम है
यदि नहीं तो हम view मैन्यू का उपयोग करके layers panel को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं
menu bar में view मैन्यू पर क्लिक करें नीचे स्क्रोल करें और panels ऑप्शन चुनें
सबमैन्यू panel के नामों की सूची दर्शाता है
panel को सक्षम या अक्षम करने के लिए layer panel ऑप्शन पर क्लिक करें
हम सीमा को खींचकर panel के आकार को व्यवस्थित कर सकते हैं
यदि आप मानचित्र को रंग बदलना चाहते हैं तो layers panel में layer के नाम पर राइटक्लिक करें
context menu को नीचे स्क्रोल करें और styles ऑप्शन चुनें
सबमैन्यू एक रंगत्रिकोण दर्शाता है
रंगत्रिकोण के शीर्ष को घूमा कर रंग चुनें
कॉन्टैक्स्ट मैन्यू को बंद करने के लिए canvas पर कहीं भी क्लिक करें
qgis विंडो के qgis बार में निचले बाएं कोने पर आप लेबल coordinate और नंबर्स के साथ एक टेक्स्ट बॉक्स देखेंगे
विशिष्ट लोकेशन के लिए x और y coordinates के मान इस टेक्स्ट बॉक्स में दर्शाए गए हैं
मानचित्र पर कर्सर ले जाएं
ध्यान दें कि x और y coordinates के मान कर्सर के लोकेशन के साथ बदलते हैं
डिफॉल्ट रूप से status bar पर render ऑप्शन चेक है
status bar में निचलेदाएं कोने पर आप अन्य लेबल current crs देखेंगे
यह कोड वर्तमान projection coordinate reference system को दर्शाता है
layers projection निर्धारित करने के लिए आप metadata देख सकते हैं
layers panel में layer के नाम पर क्लिक करें
कॉन्टैक्स्ट मैन्यू से properties चुनें layer properties डायलॉग बॉक्स खुलता है
डायलॉग बॉक्स में बाएं पैनल में metadata ऑप्शन पर क्लिक करें
properties सेक्शन में स्लाइडर को नीचे स्क्रोल करें
निचले भाग पर हैडिंग layer spatial reference system में आप इस प्रोजेक्शन के लिए परिभाषा देखेंगे
यह geographic coordinate system में wgs84 दर्शाता है
डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए निचले भाग में ok बटन पर क्लिक करें
अब मानचित्र में लेयर्स जोड़ें और projection बदलें
data layers के बारे में
सामान्यतः geographical data gis वर्कस्पेस में layers में संचित होता है
प्रत्येक layer का data attribute table में संग्रहीत होता है
कई लेयर्स एक ही भौगोलिक स्थान का डेटा दर्शा सकते हैं
qgis इंटरफेस पर वापस जाएं
अब देखते हैं कि हम layers projection कैसे बदल सकते हैं
इस क्रिया को reprojection कहा जाता है
पूर्ण layer को पुनःप्रोजेक्ट करने के बजाय हम कुछ विशेषताओं को पुनःप्रोजेक्ट करेंगे
टूल बार के ऊपरी दाएं कोने पर select features by area or single click टूल पर क्लिक करें
इस टूल के आगे काले त्रिकोण पर क्लिक करें
ड्रापडाउन से select features चुनें
canvas पर प्रदर्शित विश्व मानचित्र पर इसे चुनने के लिए united states of america फीचर पर क्लिक करें
ध्यान दें कि united states of america भिन्न रंग में दर्शाया गया है
अब हम इस layer के projected coordinate system को बदलेंगे और सेव करेंगे
layers panel में layer के नाम पर राइटक्लिक करें
नीचे स्क्रोल करें save as ऑप्शन चुनें
save vector layer as डायलॉग बॉक्स खुलता है
डिफॉल्ट format ऑप्शन esri shapefile है इसे ऐसे छोड़ दें
file name टेक्स्ट बॉक्स के आगे browse बटन पर क्लिक करें
save layer as डायलॉग बॉक्स खुलता है आउटपुट लेयर को usa1shp नाम दें
सेव करने के लिए उपयुक्त लोकेशन खोजें मैं इसे desktop पर सेव करूँगी
निचले भाग में save बटन पर क्लिक करें
save vector layer as डायलॉग बॉक्स में file name टेक्स्ट बॉक्स में file path प्रदर्शित होती है
हम इस लेयर के लिए नया projection चुनेंगे
crs ड्रापडाउन बॉक्स के आगे select crs बटन पर क्लिक करें
coordinate reference system selector में filter search box में north america प्रविष्ट करें
विश्व के coordinate reference systems में projected coordinate system हैंडिंग में परिणामों पर स्क्रोल करें
north_america_albers_equal_area_conic epsg:102008 projection चुनें
निचले भाग में ok बटन पर क्लिक करें
crs ड्रापडाउन बॉक्स में नवीन चयनित crs प्रदर्शित होता है
save only selected features ऑप्शन को चेक करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें
यह सुनिश्चित करेगा कि केवल चयनित feature ही reprojected और exported होते हैं
यहां डिफॉल्ट रूप से add saved file to map ऑप्शन चेक है
यदि नहीं तो इस ऑप्शन को चेक करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें
ok बटन पर क्लिक करें
reprojected layer भिन्न रंग में लोड़ होती है
ये दो layers अब भिन्न projections में हैं
ध्यान दें कि layers panel पर आप अब 2 प्रविष्टि देख सकते हैं
ध्यान दें कि नई united states layer world map layer के शीर्ष पर सही से ओवरले होती है
ऐसा इसलिए क्योंकि qgis में onthefly crs transformation फीचर है
qgis विंडो के निचलेदाएं कोने पर projection टेक्स्ट में epsg:4326 के आगे otf शब्द होते हैं
layers panel पर क्लिक करके unitedstates लेयर चुनें
status बार के निचलेदाएं कोने में current crs टेक्स्ट epsg:4326 पर क्लिक करें
project properties crs डायलॉग बॉक्स खुलता है
enable onthefly crs transformation को ऑफ करें और देखें क्या होता है
इस पर क्लिक करके enable on the fly crs transformation चेक बॉक्स को अनचेक करें निचले भाग में ok बटन पर क्लिक करें
main qgis विंडो पर वापस जाएं आप देखेंगे कि विश्व का मानचित्र हट गया है
आप canvas पर केवल united states का मानचित्र देख सकते हैं
ऐसा इसलिए क्योंकि इस layer के लिए projected crs albers projection में बदल गया है
अब coordinates और स्केल भिन्न हैं
layers panel में united states layer पर राइटक्लिक करें
zoom to layer ऑप्शन चुनें
अब आप चयनित projection में united states देखेंगे
फिर project properties डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए current crs टेक्स्ट पर क्लिक करें
enable on the fly crs transformation ऑप्शन ऑन करें
recently used coordinate reference systems हैडिंग से wgs 84 चुनें निचले भाग में ok बटन पर क्लिक करें
canvas पर डिस्प्ले विश्व मानचित्र के साथ अपनी पुरानी अवस्था में चला जाता है
dataset से vector layer को डिलीट करने के लिए layers panel में नाम पर राइटक्लिक करें
context menu से remove ऑप्शन पर क्लिक करें
क्रिया की पुष्टि करने के लिए एक prompt प्रदर्शित होता है ok बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि layer dataset से हट गई है
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
layers के लिए metadata जानकारी देखना
नई layer में layer से चयनित फीचर्स सेव करना
एक साथ भिन्न projections के data layers को ओवरले और रिप्रोजेक्ट करना
नियतकार्य के रूप में: north_america_lambert_conformal_conic projection के साथ united states को प्रोजेक्ट करें और अंतर देखें
पूर्ण विश्व मानचित्र layer को world mercator projection सिस्टम में रिप्रोजेक्ट करें
आपका पूर्ण नियतकार्य इस तरह दिखना चाहिए
निम्न लिंक पर मौजूद विडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वाले को प्रमाणपत्र भी देते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध क्वेरी इस फोरम पर पोस्ट करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद